सरकारी ऑफिस की बिल्डिंग को हल्के पीले रंग से रंगा गया है इसके बाहर बहुत सारी मोटरसाइकिलें और स्कूटियां भी खड़ी हुई --

इस फोटो के अंदर दस पांच किलो के बहुत सारे कट्टे रखे हुए हैं इनमें दालें चावल चीनी आदि बहुत सारे सामान यहां पर रखे हुए हैं।

इस फोटो के अंदर एक परचूनी की दुकान नजर आ रही है परचूनी की दुकान के अंदर बहुत सारे सामान भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

जिस पहाड़ पे तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं कुछ पेड़ बड़े हैं कुछ पेड़ छोटे हैं सभी तरह के पेड़ यहां है।

जिस फोटो के अंदर एक लड़का नजर आ रहा है ये लड़का यहां वर्कआउट करने के लिए आया हुआ है।

और इन सभी बुकों को सुव्यवस्थित ढंग से रैको में जमाया हुआ है जिससे कि ढूंढने में इन किताबों का आसानी हो।

हॉल का एरिया नज़र आ रहा है जहां पर इसकी दीवारें नीली रंग से रंगी गई है।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

इसमें बहुत सारी खिड़कियां भी नजर आ रही है।